और बहोत सारे कपड़े टंगे हुए दिखाई--

ये जाते इस पिक्चर में आप देख सकते हैं हरा--

बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ भी दिखाई--

और इस पिक्चर में एक गया क्लब का बैनर लगा--

आप इस पिक्चर में एक मंदिर देख सकते हैं जहां--